इस तस्वीर में मुझे कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

घर का रूफ टिनो से बनाया हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कई सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।

ये तस्वीर एक ग्रॉसरी शॉप की है।

इस तस्वीर में मुझे एक गाड़ी भी नजर आ रहा है।

चेयर का कलर रेड व्हाइट और ब्लैक है।

इस तस्वीर में मुझे एक सीटिंग टूल भी दिखाई दे रहा है।

दुकान पे बहुत सारे साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे कई सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। जिसपे लिखा हुआ है शाम सुपर मार्केट ।

इस तस्वीर में पीछे का बैकग्राउंड फॉगी है।

इस तस्वीर मे मुझे ग्लास का टेबल भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे एक आदमी भी नजर आ रहा है।